सफ़ेद रंग कु मंदिर छा जे पर पीलू रंग कु और लाल रंग कु झंडा छ योंकु टांग्योण सरिया भी छा अगाड़ी बिटिन मेपर दिख्येणी मंदिर कु गेट भी छ लाल रंग कु दिख्येणु।

यो ईं तस्वीर का माध्यम से मैं एक टेंट ये पर दिख्येणु जो कि हलकू नारगी रंग कु छा अर पिछाड़ी बिटिन जु छा टेंट पर अलग-अलग डिजायन यह मूर्ति पर लोग छन बणयाँ।